यहाँ पे एक दुकान हैं। दो शटर लगे हुए हैं नीले कलर के एक पर्दा लगा है।

और पीछे पीली-पीली लाइट भी है।

यहाँ पे कुछ लोग बैट बॉल खेल रहे हैं। बड़ा सा मैदान है। दो तीनलोग बैठे हुए हैं। एक --

एक इंसान बैठा है। एक आदमी बेड पर बैठा हुआ है। एक बेड ( पड़ा हुआ है।

और नीचे ग्रे कलर का है थोड़ा पीछे हनुमान जी की भी मूर्ति है।

सामने दोतीन लोग बैठे हुए हैं। एक तख़्त टाइप का बिछा है। बहोत सारे गमले हैं जिसमे अलग-अलग कलर के फूल हैं।

द सिटी कैफै योर ग्रे हब लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर और बहुत सारे लोग खड़े हैं। चेयर रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक खेत है चावल का बहोत सारे पेड़ लगे हैं घांस हैनदी हैपतली सी --

बगल में एक मिट्टी का घर भी बना हुआ है छोटा --

लहसुन प्याज़ और दोतीन चेयर रखी हुई है कुर्सी है।

और उनके सर में एक मूर्ति जैसा कुछ लगा हुआ है। पीछे दीवार है ग्रे कलर की --

सामने एक अन्डर वियर टी शर्ट बनियान की सब दुकानें हैं सारे डिब्बे रखे हुए हैं पिंक कलर के येलो कलर के।

ये अंदर दुकान में एक घड़ी हैपंखा है और फोटो स्टेशनरी की दुकान भी है जिसमे दुकान के शटर में ताला भी है।

बना हुआ है पीले कलर का काले कलर कादोतीन ऑटो खड़े हुए हैं।

और डिब्बे हैंबुक हैं और तीन अंकल जी हैं एक अंकल मुँह में मास्क लगाए हुए हैं।

सामने एक लाल मिटटी का मोर बना हुआ है उसमें फूल लगे हुए हैं पिंक कलर के वाइट कलर के।

व्हाइट लाइट जल रही है ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है। नीचे एक भी है और एक --

सामने एक टेम्पल है और लाल-लाल छोटे-छोटे बॉक्स बने हैं जिसमे कैंडल जली रही है बहोत सारी बहोत सारे लोग भी खड़े हैं।

अंदर ब्लू कलर की लाइट जल रही है। ऊपर का गोल्डन कलर का है और एक लाइट हरी कलर की ऊपर जल रही है।

दो स्कूटी खड़ी हुई हैं और नीचे लाल रंग के पते हैं ग्रे कलर के पत्थर हैं।